लाइटिंग है बहुत सुन्दर है यहा पर रेड कलर का यूज़ किया हुआ लाइटिंग के लिए और भी बहुत सारे ब्लू कलर भी है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये चीज़--

यहाँ पर भी हमे एक मंदिर जैसा लग रहा है यहाँ पर हमें एक दग दगा ऐ एक दिखाई दे रहा है दग दगा जो मस्तक है उसको दिखाई दे रहा है अलग से जो और वहाँ पर बहुत सरे यहाँ पर आ पत्ते पुत्ते भी--

अ मूर्ति हमें नजर में आ रहा है और उसके ऊपर एक चिड़िया जैसा एक कोई बग वगेरा वो बेठा हुआ है तो बहोत बढ़िया लग रहा है और इसके आसपास में सायद बगीचा है सारे पेड़ पोधे भी यहां पर लगाया गया है।

इसका नजारा भी बहोत बढ़िया है दूर से ही हमें बहोत ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा हे जो असमान के साथ मिला हुवा लग रहा हे और उसके अ नीच से ही हमे--

तो बहुत अच्छा लग रहा हैं जो शॉप हे साफ़ सफाई है बिलकुल और भी स्टॉक्स भी बहुत ठिक है और क्वॉलिटी सारा प्रोडक्ट मिलता--